और इसके डेकोरेशन बहुत ही अच्छे है प्यारी लग रही है रंगी रंगी लाइट लगा हुई है वाइट कलर की हरे कलर --

और उसके पास पेड़ है बहुत ही जंग देखने में जंगल लग रहा है।

और इसमें बोहोत अच्छी घास आ रही है और देखने में बोहोत खूबसूरत है जहाँ पर धान मिलते हैं।

बच्चे सामान रखा है। ले जा रहे हैं पेंसिल है लबड़ है।

और तीन बच्चे हैं एक बच्चे ने मास्क्स लगा रखा है और एक देख रहा है एक ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी --

जहाँ पर लोग बैंक में पैसे डालने के लिए आते हैं जा और पैसे निकालने के लिए आते हैं।

और जहाँ पर चाला मच्छी बिक रही हैं सोली मच्छी है बेकड़ी मच्छी है सभी तरह की मच्छी हैं।

और यह मछलियां बेकड़ी मच्छी हैं और कुछ खरीद रहे हैं। कुछ लोग काट रहे हैं।

ये फूल एक बगीचा है इसमें लाल कलर के फूल आ रहे हैं और पास खूबसूरत पेड़ लगा हुए हैं.

रेड कलर की चुन्नी और लटकी है और उसके और पास पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक पीले है।

पैसे डालने के लिए आते हैं यह बहुत ही बड़ी बैंक है बहुत अच्छी बैंक है।

उसके बहुत बड़ा जीना बना हुआ है और ये बहुत प्यारी बनगी --

और झील के पानी के अन्दर एक बोहोत बड़ी नाव है।